कार और बाइक दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे कुर्सी टेबल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बिजली की तार दिखाई दे रही है।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

इस फोटो मे मुझे लाइटें दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे माछिया दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे लाइट दिखाइ दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बाइक और बसें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है।